यह एक होटल की बेडरूम है इस बेडरूम में एक बेड है लॅम्प है सोफ़ा है बहुत अच्छे तरीके से एक सजावट की गयी है फ्लावर्स है करटन्स है।

और कपड़े रखने के लिए जगह है टेबल है बैठने के लिए कुर्सी भी है और बहुत व्यवस्था।

वो राजा थे इन बुद्दिष्ट लोगो के --